और एक हमें बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग पर जिस पे नगरपालिक निगम भोपाल लिखा है।

एथेनिक फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और जालियां लगी हैं और इसके गेट पर भी रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

और हमें एक सफेद गाड़ी खड़ी नजर आ रही है और सड़क दिखाई दे रही है।

और बहु रानी सारी लिखा हुआ है। एक सफेद कार खड़ी हुई है।

पंडित खुशीलाल शर्मा शास्कीय आयुर्वेदिक संस्थान भोपाल लिखा है।

और बाकी हमें बहोत सारी महिलाएं--

भगवान की मूर्ति रखी हुई हमें दिखाई दे रही है और आसपास तस्वीरे लगी हुई है। पूजा की सामग्री हमें रखी हुई दिखाई दे रही है और सफेद फर्श--

हरी-हरी घास के पास हमें सड़क बनी हुई दिखाई दे रही है एक सफेद बिल्डिंग और लोग खड़े हुए हैं वहां और हमें गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

हमें मैदान में खड़े हुए चलते फिरते लोग दिखाई दे रहे हैं दो ऑटो खड़े हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं एक जगह है जहां पर एक दो बेंचें लगी हुई है।

पानी की हमें एक नदी नजर आ रही है भरी हुई पानी की और--

इस तस्वीर के अंदर हमें भीड़-भाड़ और गाड़ियां और बहुत सारे कपड़े और दूसरा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।